जैसे लगता है गाड़ी स्टैंड बाइक स्टैंड होता हैं वैसे स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे सब कोई गाड़ी को जमा करके रखता हैं बाइक - वाइक को जमा करके रखता है।

और इसमें ऊपर लगता लम्बे वाला लाइट गया हुआ है | उसका पोल गाड़ा हुआ है और यहाँ मछली के पर एक कुर्सी भी रखी है ।

ये डॉक्टर का फोटो है।